एक लोग के बैठने वाले पे गुब्बारा रख दिया गया है।

जो हमको देखने में बहोत लाभदायक होगी इसे अप फॉलो करते रहें

बहुत सारी चीजे है